--और सामने में बॉटल स्प्रे कि दिख रही हैं एक ब्लू कलर कि बॉटल दिख रही हैं मिरर लगे हुए हैं और छोटे-छोटे बॉक्स बने हुए हैं पूरे में ग्रीन कलर दिख रहा हैं मिरर दिख रहा हैं टीवी दिख रहा हैं।

यहाँ पर एक बे महिला जो है रेड कलर का दुल्हन का सूट पहने हुए हैं जो की गोल्डन कलर के वर्क से और पिंक कलर वर्क से भरा हुआ हैं अ दूल्हा शेरवानी पहना हुआ है गोल्डन कलर कि मैरून कलर की धोती हैं और दुपट्टा हैं।

द द ये एक रोड दिख रहा है जहाँ पर एक नीले कलर का दरवाजा है और एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है जिसको पकड़ा हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो की वाइट वाइट कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है और ऊपर बहोत से बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं और --